और सामने सड़क पर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे है।

और आस पास बहुत सारे दुकाने दिखाई दे रही है।

और सामने एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

और सामने परतों से सजावट की हुई है।

यह एक अंकुर बुक स्टोर है।

और सामने काउंटर पर बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है।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

यह एक कपड़ो की दुकान है।

यह एक जन सेवा केंद्र की दुकान है।

कंप्यूटर दिखाई दे रहा है।

और सामने एक खंभा दिखाई दे रहा है।

और सामने कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

कूड़ेदान के आसपास बहोत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही--

और सामने कुछ खिड़कियां और दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

और सामने कुछ कुर्सियों पर एक एक गुब्बारा रखा हुआ है।

और सामने कुछ लाइटे भी जल रही हैं।

और कुछ कॉलेज के बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक कमरा है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

यह एक खुला मैदान दिखाई दे रहा है।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

यह एक स्कूटी की एजेंसी है।